और दिवाल पर ए_सी लगी हुई है नीचे वाइट टाइल्स लगी है।

और बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं बाउंड्री के उस पार।

एक लड़का फ्रेंड एक्स में बैठा हुआ है और एक लग्जरी सोफा रखी गई है।

और इस तरफ घर भी दिखाई दे रहा है बाउण्ड्री के उस तरफ भी बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें बहोत सारे सामान मिलते हैं कार के।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा कार का शोरूम है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ी सी बगीचा है जिसमें--

इस चित्र में एक बहोत बड़ासा माल है जिसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर में--

इस चित्र में एक एस_बी_आई बैंक के जिसके नीचे बहोत सारी भीड़ भी लगी हुई है।

और दिवालों पे सीनरी टंगी है घड़ी टंगी है पंखे टंगे है।

गार्डन में बहुत सारे अगल बगल बाउंड्री के पास लाइन से पेड़े लगी हुई है।

इस चित्र में बहोत बड़ी मंदिर बनी है।

बड़े बड़े पत्थरों में बड़े बड़े चट्टानो मैं पुरे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और छोटे छोटे बबूला दिखाई दे रहे हैं उस तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुलर भी दिखाई दे रही है नीचे--

एंजॉयमेंट के लिए बच्चों के लिए भी--